सामने ग्यारह माला हैं जो नीले रंग के पाइप के साथ बांध कर नीचे लटक रही हैं एक माला लाल और सब्ज है और दूसरी--

ये कमरा है जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ दरवाजे का रंग काला है कमरे के बाहर की दीवारें सफेद रंग की है।

अखबार अखबार है और इसके साथ एक मोबाइल है।

मेज के आगे सोफे में सोफे हैं जिनका रंग पीला है इस पर एक औरत बैठी है और बहुत से बलब छत पर रोशन है और एक आगे बच्चा बैठा हुआ है।

घास से भरी हुई है और जो और कई कई जमीन घास से खाली है और एक तरफ दीवार है जो इंटो से--

जिनका रंग सब्ज है और गमलों का रंग सुर्ख है फूलों के साथ एक गाड़ी खड़ी है जिसका रंग सफेद है।

ये जो ऊपर रखी गई है जिन पर गुलाबी हल्का पीला नीला काले रंग की कमीजे सिलाई करके दिखाई गई है। जमीन पर एक मूर्ति है।

ये एक नदी है जिसका पानी सफेद है इसमें दो मुर्गा भी हैं इनका रंग काला है वो पानी में तैर रही है।

हम्म सफेद रंग के लफ्जो से कुछ लिखा गया हैं गाड़ियों के कई कुर्सी पर एक आदमी बैठा हैं जिसकी शर्ट का रंग लाल और पैन्ट का रंग नीला हैं हमारे तो सामने स सबज दरख़्त भी मौजूद हैं।

पहनी है जो पहन रखी है दूसरी जानब एक गाड़ी खड़ी है जिसके रंग सुनरमई है इसके बराबर में एक मोटरसाइकिल पर एक आदमी है जिस --

शर्ट का रंग सफेद और पेंट का रंग काला है एक बैठा है जिसकी कपड़ों का रंग काला है।

सड़क के साथ एक पार्क है जिसके साथ जिसकी बाढ़ छोटे पौधों से बनाई गई है इसके अंदर दरख़्त और रंग बिरंगे --